इस तस्वीर में हमें एक शादी का गार्डन दिखाई दे रहा है जहां पे काफी सारे लोग एकत्रित हुए है।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

यह पिक्चर दो हजार बीस की है व इसमें काफी सारी लाइटे भी लगाई है और पोस्टर के ऊपर रोशनी करी --

इस तस्वीर मे हमें एक टॉकीज दिखाई दे रहा है जहाँ पे लाइन से काफी सारी लाल रंग की कुर्सियां है।